यहाँ पर बहोत बड़ी मछलियों का मार्केट दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहोत सारी मछलियाँ रखी हुई दिखाई दे रही है और बहोत सारी व्यक्ति भी दिखाई दे रहे है मछलियों का मार्किट बना हुआ हैं।

यहाँ पर एक पार्क बनी हुई है जहाँ पर कुछ एक ट्री भी दिखाई दे रही है व बहोत शाइन लाइटें लगी हुई दिखाई दे रही है बहोत सारे पेड़-पौधे लगे हुए है नारियेल के पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है।